एक कार दिख रही है दिवार दिख रही है वाइट कलर का पेंट पुता हुआ है।

ब्लू कलर का फुग्गा है लाइटे लगी हुई है।